इस चित्र मे मुझे एक गाड़ी दिख रही हैं उसका रंग है काला गाड़ी के पीछे और भी कुछ गाड़ीया दिख रही हैं उसके रंग भी काले ही हैं।

मुजे एक मेदान दिख रहा है और यह रात का समय है पीछे दो बड़े-बड़े बतिया जल रही है और एक छोटी वाली बतिया भी है आसमान मे चाँद चमक रहा है और मेदान मे कुछ लोग है।

जो अपना-अपना कामकर रहे है कुछ दोड़ रहे है कुछ अपने काम कर रहे है और कुछ चल रहे है।

इस चित्र मे मुझे एक नदी दिख रही है नदी का पानी बहुत ही साफ दिख रहा है नदी के ऊ --

सामने की तरफ एक कूड़ा दान भी रखा हुआ है और ऊपर की तरफ दो साइन बोर्ड और बायीं तरफ एक किसी पटेल साहब का दूकान है। --

इस चित्र मे हमें एक चिड़ियाँ खाना दिखाया गया है जहाँ पे तीन हमें कछवे देखने के लिए मिलते है।